और इसकी बिल्डिंग बहुत साफ और बड़ी है।

बाहर रंग बिरंगे फ्लैग्स लगे हुए है इसका गार्डन बहोत सुंदर--

कुछ उस पर कपड़े रखे हुए हैं।

घास भी दिखाई दे रही है यहां कुछ सीढ़ियां हैं।

चीजें रखी हुई है इसके ऊपर एक तिरंगे का फ्लैग लगा हुआ है।

एक व्हाइट बोर्ड और एक ब्लैक बोर्ड --

एक नेट भी लगा हुआ है।

जो बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इसपर एक बोर्ड लगा है जहाँ शाकाहारी भोजन लिखा गया है।

जहां पर हरे रंग की टीन लगी हुई है।

मुंबई में अक्सर ऐसे फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं।